इस तस्वीर में बहुत सारे लोग अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए दिख रही है।

बहुत ज्यादा बड़े बड़े पर भी है बहुत सारे मनुष्य भी है हरा रंग का गमला भी रखे हुए हैं।

स्विमिंग पूल भी है स्विमिंग पूल में ढेर सारा मनुष्य दिख रही है।

मुझे इस तस्वीर में सफेद और लाल रंग का सुंदर सा फूल दिख रही है हरा रंग का पत्ता भी दिख रही है।

इस तस्वीर में बहुत जादा मनुष्य दिख रही है और ढेर सारा बाइक दिख रही है काले और नीले रंग का।

टेबल में टिशू पेपर भी दिख रही है।

इस तस्वीर में लाल सफेद पीला रंग का बड़ा सा घर दिख रही है।

पानी का मोटर मशीन भी दिख रही है।

दो टेबल और दो चेयर भी दिख रही है।

इस तस्वीर में का दुकान दिख रही है और सफेद रंग का वाल भी वाल के ऊपर घड़ी और स्विच दिख रही है शीशे का टेबल दुकान के अंदर में क्रिकेट बॉल और ढेर सारा कार्टून बॉक्स दिख रही--

रेलिंग भी दिख रही है ऊपर वाले फ्लोर में बंद दुकान भी है।